दो चम्मच भी रखे हुए हैं साथ ही--

बीच में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।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

हैंगर पर कुछ बड़े कपड़े नजर आ रहे हैं।

यहां पर हम सामने एक बड़े से--

चाहते हमे यहां पर कुछ बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर हम सामने एक बड़े से फ्रिज को देख रहे हैं।

बोहोत से लोग यहां पर मछली काटते--

यहां हम सामने एक पार्क देख रहे हैं।

बाहर लोहे की रेलिंग लगी है कुछ गाड़ियां पार्क नजर आ रही है अंदर कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

लाल रंग का एक मंदिर भी हमें नजर आ रहा हैं।

नीचे हमें कुछ दुकान नजर आ रही है।

साथी सामने हमें कुछ खिड़की दरवाजे नजर आ रहे है।

बहोत से लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

सफेद रंग के कपड़े में कुछ हार पहने नजर आ रहा है।

यहां हम सामने एक बड़ी सी दुकान को--

बड़े बड़े रैक बने हुए हैं।

कुछ छोटे बच्चों के खिलौने कुछ डिब्बे नजर आ रहे हैं।

साथ ही हमें यहां पर एक वाटर टैंक नजर आ रहा है।

टेबल रखे हुए हैं टेबल के ऊपर हमें एक कॉपी भी दिखाई दे रही है।

साथी हमें पीछे की दीवार का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां हम सामने एक गार्डन देख रहे हैं।

येलो नेवी ब्लू और क्रीमी कलर का जैकेट रखा हुआ है।